यह समुन्दर बहुत ही बड़ा है और हम देख सकते है की यहाँ बहुत से लोग है।

यह एक घर की छत नहीं है यह एक बिल्डिंग की छत है।

यहाँ एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें तीन विकेटे लगी हुई हैं।